यह एक लाइब्रेरी हैजहाँ कॉर्नरों में बुक्स रखी हुईं हैं।

यहाँ एक नदी है। के पार पेड़ पौधे हरे-हरे --

अंदर स्टेज सजी हुई है।

इसकी दीवारों का रंग सफेद है। यह बोहोत ही बड़ी है।

जो कांच वा पत्थरो से बना --

इस लाइब्रेरी में लाइट व पंखे लगे हुए हैं |।

यह एक सुंदर सा पैलेस है पैलेस हरे-हरे पेड़ व पौधों से भरा हुआ है।